और बगल में एक दुकान है पॉपुलर हाउस डॉक्टर अहमद सर आलम असलम कुछ इसी टाइप में लिखा हुआ है सेटर है बड़ा सा गेट है इसके बैगनी कलर के बहुत बड़ा गेट है।

और काफी अच्छा लग रहा है मौसम बहुत बेस्ट है और हरे-हरे गाछ भी है।